काफी कार्टेल का दृश्य बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे लोग --

है जिसके सामने एक बाइक वाला --

क्योंकि अभी उद्घाटक किया जाना बाकि है।